एक मतलब चाय पे और ये पानी भी चाय पे भी है और घास वगैरा भी यहाँ पे वो रखी है व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

दो आदमी बैठी हुए है चेयर पे चेयर पड़ी हुई है यहा पे सेटर पड़ा हुआ है और ग्रीन और व्हाइट कलर मे बैलून लगे हुए है और चेयर भी पड़े हुए